और काठ के दरवाजो की चौखट नजर आ रही है।

रात का समय है और कल उसे स्कूल में इस चार्ट को प्रस्तुत करना है।

प्रेस की दुकान दिखाई दे रही हैं उसमे तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऐड है।

ज्वेलरी के नीचे की तरफ एक और फुटवियर दिखाई दे रहा है।

एक एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है बस स्टैंड के पास दो बसे दिखाई दे रही है।

एक ए वन एन_जे_बी पार्लर का--

एक कैफे दिखाई दे रहा है कैफे के अंदर--

खिलौनो के नीचे की ओर पांच गमले है।

एक भारतीय डाक ऑफिस एक सौ चौबीस जीरो जीरो एक--

पांच लड़के और तीन लड़कियां दिखाई दे रही हैं।

कैफे को डेकोरेट किया गया है लाल और सफेद रंग के गुब्बारों से उन्हें सजाया गया है।

एक पारक दिखाई दे रहा है जोकि बहोत छोटा सा है पारक के बीचो बीच एक--

चीनी के ओर आटे के बड़े बड़े कट्टे दिखाई दे रहे हैं।

ये एक एफ आर डी जिम दिखाई दे रहा है।

कांच के शीशे में से लोहे की मशीनें दिखाई दे रही है।

खून टेस्ट करके सैंपल इकट्ठे करे हुए हैं।

एक मेज दिखाई दे रहा है।

एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है।

दो मग रखे हुए हैं जिनका कलर लाल है लाइट जैसी हुई है।

एक हरियाणा रोडवेज की बस दिखाई दे रही है।